और एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

वे किताबा खरीद रही हैं। अकेला कॉल पर बात कर रहा है।

यहां एक बच्चा अपने बाल कटवाते हुए दिखाई दे रहा है वो कटिंग वाला उसकी कटिंग कर रहा है।

यहां पर अनेक प्रकार के मछलियां मिलती हैं सब लोग यहां आकर ही मछलियां खरीदी करते--

इस चित्र में एक स्टेशनरी के अंदर एक व्यक्ति अपनी तस्वीर खिंचवा रहा है।